वहां पर अह काउंटर लगे हुए हैं उसके बगल में गेट है।

और नीचे कुछ भी नहीं है वो बगल में पुआल रखा हुआ है भइस को खाने के लिए।

कुछ कुछ बनाए गए हैं यहां पर रस्सी के द्वारा डलिया बनाकर उसमें घास उगाए गए हैं।

और यहां पर लाल डिब्बे में कुछ रखे हुए है।

शोरूम लिखा गया और नीचे कुछ मोटसाइकिल खड़े हैं।

और ट्रैक्टर है ट्रॉली है और जे_सी_बी मशीन है उसके बगल में एक कार भी खड़ी है।

यहां पर पानी है बहुत बड़ा माने इ तालाब बना हुआ है उसके अगल बगल--

और वहां पर भी कुछ लोग ट उसके बगल में भी कुछ लोग टहल रहे हैं और ये बहुत बड़ा फील्ड है फील्ड में घास उगी हुई है।